java java में constructor overloading constructor overloading पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
constructor overloading constructor overloading क्या है
और constructor overload करना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए
कि eclipse का उपयोग करके java में constructors कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबधित tutorials के लिए दर्शाई गयी हमारी website पर जाएँ
constructor overloading क्या है
class के लिए विभिन्न constructors परिभाषित करें
वे parameters के प्रकार या number में भिन्न होते हैं
अब देखें कि constructor को overload कैसे करें
eclipse में मेरे पास दो variables और एक method के साथ class student है
पहले एक पैरामीटराइज्ड constructor parameterized constructor बनाएँ
अतः type करें student parentheses में int number comma string the _ name
curly brackets में type करें roll _ number is equal to number
और name is equal to the _ name
अतः हमारे पास दो parameters के साथ एक constructor है
इस constructor को कॉल करें
अतः name method में type करें new student parentheses semi colon
हम एक error देखते है यह कहती है constructor student is undefined
यह आसान है क्योंकि हमने दो parameters के साथ constructor परिभाषित किया है
और हम बिना parameters के constructor कॉल कर रहे हैं
अतः हमे arguments pass करने की आवश्यकता है
अतः parentheses में type करें 22 comma double quotes में ram
हम देखते हैं कि error ठीक हो गई है
method को कॉल करें
अतः new से पहले type करें student s is equal to new student
अब object s का उपयोग करके method studentdetail
program सेव और run करें
ram output देखते हैं 22 और ram
अब parameter के बिना constructor परिभाषित करें
अतः type करें student parentheses
curly brackets में roll _ number is equal to 0
और name is equal to double quotes में hypen बिना name का
अतः हम बिना parameters के constructor कॉल कर सकते है
अतः type करें student s1 is equal to new student parentheses semicolon
इस समय हमें कोई error नहीं दिखी क्योंकि हमने parameter के बिना constructor परिभाषित किया
फिर s1 dot studentdetail
program को सेव और run करें
अतः output में हम देखते हैं zero और dash और default constructor कॉल होता है
यह constructor overloading है
हमारे पास भिन्न पैरामीटर के साथ दो constructors हैं
दोनों constructors के समान name हैं
अतः पैरामीटर के number और type पर आधारित constructor कॉल होता है
अब constructor overloading का लाभ देखें
मानिए कि अब हम दो parameters के साथ एक constructor कॉल करते हैं
अतः type करें student s3 = new student ;
अब parentheses में मानिए कि मैने पहले name argument और फिर roll number प्रविष्ट किया
देखें क्या होता है
अतः डबल कोट्स में raju कॉमा 45
हम एक error देखते हैं जो कहती है constructor student with the parameter string comma int is undefined
अतः constructor को परिभाषित करें
अतः type करें student parentheses में string the _ name comma int r _ no
अतः यहाँ पहला parameter string है और दूसरा parameter int है
फिर curly bracket में roll _ number is equal to r _ no
और name is equal to the _ name
program सेव करें
अब हम देखते हैं कि error ठीक हो गई है
method को कॉल करें
अतः s3 dot studentdetail
program को सेव और run करें
अतः हम output देखते हैं 45 और raju
अतः यहाँ हम देखते हैं कि जब हम constructor को कॉल करते हैं
हम parameters के बारे में परेशान नहीं होते हैं जो हम पास कर रहे हैं
यह आसान है क्योंकि हमने भिन्न parameters के साथ कई constructors परिभाषित किये हैं
अतः सही constructor overloaded होता है
इसलिए अब हम एक constructor परिभाषित कर सकते हैं जो केवल एक parameter लेता है
जो roll number है
अतः type करें student parentheses में int num
curly brackets में roll _ number is equalto num
और name is equal to no name
अब इस constructor को कॉल करें
अतः type करें student s4 is equalto new student इस समय हम एक single argument pass करेंगे अतः 61 pass करें
फिर s4 dot studentdetail
program को सेव और run करें
अतः आउटुपट में हम देखते हैं roll number के लिए 61 और name के लिए no name
जैसे कि हम देख सकते हैं सही overloaded constructor कॉल होता है जब नया निष्पादित होता है
parameters के आधार पर उल्लिखित होता है कि सही constructor overloaded हो गया है
इस तरह से constructor overloading होता है
अतः इस tutorial में हमने सीखा
constructor overloading के बारे में
constructor overload करना और constructor overloading का उपयोग
स्वमूल्यांकन के लिए employee class के लिए multiple constructor बनाएँ और constructor को overload करें
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद